लड़का खड़े हुए है जो आपस मे बात करते हुए नज़र आ रहे है।

एक रैट कुछ खाते हुए नज़र आ रहा है दो रैट खड़ी हुई हैं।